सामने चर्च है। सफेद कपड़ों में चर्च खड़े हैं किताब लेकर पढ़ाई पढ़ रहे हैं सफेद पीले रंग का टॉवल डाल रखा --

ये एक बीड़ी बड़ी सी बिल्डिंग है। नीले गुलाबी कलर की लाइट जल रही है पीले कलर की लाइट जल रही है। पब्लिक आई हुई है।

माँ दुर्गा की पूजा हो रही है। पब्लिक पूजा कर रहें हैं।

काफी सारे बच्चे हैं जमीन पर बैठे हुए हैं। कुछ पेंटिंग बना रहे हैं कुछ ड्राइंग बना रहे हैं। --

काफी बड़ी स्कूल है| स्कूल के अंदर काफी लड़के हैं जो टेबल पर बैठे हुए है।

ऊपर भी काम चल रिया नीचे भी काम चल रिया मिट्टी है।

काफी बड़ी पारक बनी हुई ऐं | बोन्ड्री बनी हुई ऐं | चारो तरफ पेड़-पौधे खड़े ऐं ।

बिल्डिंग के अंदर कलर सफेद लाल रंग की कलर हो रही है। आस-पास काफी बच्चे बैठे हुए हैं।